नमस्कार दोस्तों अब हमारे सामने नया दृश्य प्रस्तुत किया गया है इस दृश्य में देख पा रहे है बोहोत बड़ी विशाल काय बिल्डिंग हैं बिल्डिंग के बहार एक फोटो लगाये गये है जिस पे काफी हार पहनाया गया हैं।

उस पे काफी बच्चो ने सामान रखा हुआ है एक बच्चा हमारा समक्ष में गोल चेहरे में है और लाल कलर की टी-शर्ट पहना है और वो कैंडल बना रहा है। दोस्तों धन्यवाद।

लक्ष्मी होटल भी है और उसमें नीचे यूनियन बैंक भी है| ठण्ड के मारे रूम बंद है| ठण्ड के मारे सुबह का मौसम है इसलिए काफी लोग कपड़ा खड़े हैं और कुछ लोग खड़े होके चाय पी रहे हैं| चाय--